इस पिक्चर मे तीन चार पाच छे छे मेंबर्स दिख रहे है इस पिक्चर मे छट पूजा कर रहे है।

इस पिक्चर मे एक लेक भी है इस लेक मे बा एक बिहार का आ महिला आ छट पूजा क्र रहे है।

पिक्चर मे ये बहुत जान है इस पिच्चर मे जन पूज कर रहा है पूजा याचा कर रहे है साप्रदाय में।

ये करंट पोल है इधर पीछे मे करंट पोल भी अच्छा है वो करंट भी पास कर रहे है उधर कोई --

कहने के बाद ये एक फोटो एक आ एक हिल है ये हिल अच्छा हिम ये अट्ट्रकटिव है।